यह कोई ग्रोसरी स्टोर है जिसमें खाने पीने का समान और कुछ रैंक हैं कुछ शीशे का काउंटर है जिसमें कुछ समान रखा हुआ है।

यह एक कपड़ो की शॉप है | इसमें कुछ कपड़े के गट्ठर बंधे हुए हैं और इनके पीछे एक खिड़की है।

ये कोई बहोत पुरानी बिल्डिंग है | इसके बाहर कुछ पेड़ पोधे है और कुछ पार्किंग रोड जमीन है जहा पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुईं हुईं है और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुयी है |